है सीढ़ी है बाइक --

जिम अ की कुछ मशीन हैं।

टु स ने पेंट टॉप पहना है।

एक बाइक है एक कार है वायर --

एक अंकल ने बैग पहने हैं और ब्लू क--

और नंबर है व्हाट्सएप नंबर लिखा--